जिनमें से कुछ का रंग घिये रंग का है कुछ का रंग लाल रंग का है।

जैसा की मैं यहां देख पा रही हूं यहां दिन का समय है यहां मौसम साफ है।

जिनमें से कुछ चॉकलेट डेयरी मिल्क है कुछ फाइव स्टार है कुछ पर्क है।

यहां जो बुक शेल्फ बनी हुई है वो काले रंग का दिख रहा है।

जो सादा कलर का नजर आ रहा है यहां बहुत सारी बुक दिखाई दे रही है।

जो बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है पेंटिंग के अंदर कुछ लिखा भी है।

कुछ ब्राउन रंग का है कुछ ब्लू रंग है और बोहोत सारे रंग के है।

यहां एक बाइक भी रखी दिखाई दे रही है यहां बहुत सारे सामान हैं।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

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां दिन का समय है यहां बहुत सारे टेबल लगे दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही है टेबल के ऊपर पिज़्ज़ा का बॉक्स भी रखा दिखाई दे रहा है।

जो डोमिनोज का है यहां कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी रखे दिखाई दे रहे है।

जैसा की मैं एह देख पा रही हु एह बोहोत सारे बुक रखे नजर आ रहे है।

बुक रखने वाला शेल्‍फ सादा कलर का दिख रहा है यहाँ बहुत सारे बोर्ड भी टंगे दिख रहे हैं।

जैसा की मैं एह देख पा रही हु एह मुझे एक बुकी स्टोर नजर आ रहा है ।

यहां सीलिंग पर लाइटें भी जलती दिख रही है यहां बहोत अच्छा लग रहा है देखकर--

जिनमें से कुछ फूल से भी सजे हुए हैं कुछ लाइटें से भी सजी हुई है यह लाइट बहुत तरह की जल रही है --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां दिन का समय है यहां एक हॉल रूम दिख रहा है यहां --

यह ब्‍लू कलर का मेड पे लेटे हुए दिख रहे है यहां सीलिंग पर पंखे भी लगे दिख रहे हैं यहां --

कुछ ऑरेंज रंग का शर्ट पहने दिख रहे हैं यहां कुछ लड़कियां भी दिख रही है।

यहां बहुत साड़ी सीढ़ी बनी नजर आ रही हैं यहां कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं यहां कुछ --

यहां बहुत सारी मिठाईयां भी नजर आ रही है जिनमें से कुछ मिठाई सादा रंग का दिख रहा है और--

जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये नजारा सुंदर लग रहा हैं --